बोर्ड भी दिख रहा है बोर्ड में दिखाई दे रहे हैं भी लगी हुई है छेद भी दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारा मकान बहुत लंबा सा मकान दिखाई दे रहा है मकान में व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है और बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिख रहा है और --

र भी लगा हुआ है नीले कलर का वाइट कलर का वाइट कलर से नाम भी लिखे हुए हैं खंभे दिखाई दे रहा है दिखाई ब्लैक कलर की --

रोड दिखाई दे रही है रोड पे रिक्शा भी दिख रहा है रिक्शा में ब्लैक कलर और येल्लो कलर का दिखाई दे रहा है --

बैठा हुआ है और सफेद कलर का शर्ट पहन रहा है दिखाई दे रही है बड़े बड़े पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं हरी-हरी सी दी --